यहां बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है।

और बड़ों के लिए भी यहां पे जो भी समान है वो मौजूद है लेकिन इस दुकान को थोड़ा मरोमत की जरूरत है।

इस ज्वेलरी शॉप में आपको दो नेकलेस दिखाई दे रहा है जो कि डायमंड का लग रहा है और यहाँ पर एक शोफा भी नज़र आ रहा है।

जैसा कि हम देख रहे हैं हमें यह एक जिम नजर आ रहा है।

ये देखने मे काफी सुंदर लग रहा हैं।

ये स्टूडेंट यहाँ पर पलती के लिए आये है और इस ग्राउंड के आस पास कई सारे वृक्ष है वृक्ष के पास बहुत सारे बिल्डिंग भी है ।

समुद्र की लहरे मे दिखाई पड़ रही है।